इसका एड्रेस चित्र कोटे रोड --

सर्कुलर रेंज में एसी है।

ऊपर गेंदे के फूल लटकाए गए है कुछ रंग-बेरंगी डिज़ाइने --

उसमे एक कूड़े को बिच में इकठ्ठा किया हुआ है।

ढेर सारे घास और छोटे-छोटे पेड़ है।

और उसके बगल मे शेविंग फोम रखा हुआ है।

इसमें लाल धारियां बनी हुई है।

दाएं तरफ कुछ लिखा हुआ है लाइन से--

सफ़ेद और लाल रंग में सराबोर है।

घासो को ढका हुआ है।

टुटा हुआ लग रहा है।

यहाँ पर कुछ लड़किया बैठी है जिन्होंने लाल रंग इ कपड़े पेहन रखे है।

हरे-भरे पेड़ के साथ लाइटिंग की गई है।

पेड़ झरने की तस्वीर है।

इसके आसपास ढेर सारे घास और हरे-भरे पेड़ है।

बैगनी रंग की शर्ट पहन रखी है।